मला एक किल्ला दिखत हाय. चिडिया दिखत हाय. पेड़ पौधे दिखत हाय.

एक खंबा छोटीशी कॅरी घास दीवार दिखत हाय.

मला एक बहुत बड़ा मैदान दिखत आहे चट्टाने दिखत आहे.